आसपास घर दिख रहे हैं लोग खड़े हुए हैं गाड़ियां दिख रही हैं।

चित्र में एक मशीन दिख रही है जो हरे कलर के हैं गेट दिख रहा है यह इंजीनियर की शॉप है यहां कुछ हरे-हरे दिख रहे हैं।

चित्र में एक फैक्ट्री दिख रही है फैक्ट्री में पानी दिख रहा है पानी के ऊपरी ब्रिज दिख रहा है ब्रिज नीले कलर से पुता हुआ है।

हमे एक बड़ा मैदान दिख रहा है जिस पर पत्थर दिख रहे हैं उसके आसपास बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

इस चित्र मे दुकान दिख रही हैं कई तरीके की कई प्रकार की मछलिया दिख रही हैंदुकान मे--

कई सामान दिख रहा हैं।

ये बड़ी बिल्डिंग दिख रही हैं पेड़ दिख रहे हैं आसमान दिख रहे हैं दिख रहे हैं।